और स्लिपिंग कोच में बसे हैं जो पिंक कलर की एक है।

मुझे सामने एक बैनर दिख रहा है जिस पर लिखा हुआ है।

और दो भरणियां यहां रखी हैं जिसमें बिस्किट ननखटाई वगैरह रखी है और तीन प्लास्टिक की चार बोतलें पिंक कलर की रखी हुई हैं।

मुझे यहां एक डिश तैयार की हुई दिख रही है जो ऐसा लग रहा है कि--

सणकाया हुआ भी है पास बाजू में फ चार तरफ रखा हुआ है और बीच में स्लाट और चटनी की वटकी रखी हुई हे।

ब्राउन कलर की है और एक सिल्वर कलर की है उसके बाजू में बराबर एक स्कूटी खड़ी है।

मुझे यहां कुछ ऑफिस जैसा दिख रहा है।

मुझे यहां एक साड़ी का शोरूम जैसा दिख रहा है।

और साड़ियों के कलर ऑरेंज ग्रीन --

अपने यहां साथ अपने सब मिलकर एक्टिविटी कर रहे हैं और सामने दो टीचर खड़ी हैं जो उनको गाइड कर रही है।

है और ब्लैक कलर के दो कान जैसे दिख रहे हैं उसके और एक बंदा बाहर खड़ा है।

मुझे यहां एक रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा ह ।

जो काफी बड़ी है और इस तरफ एक बंदा खड़ा है।

बिछाई हुई हैऔर सामने एक टिप दो चेयर रखी हुई है एक टेबल है और उसके सामने एक बड़ा सा मिनर लगा हुआ है।

मुझे यहां एक लग्जरी बस दिख रही है।

बाहर एक पंडित खड़ा है।

और उसके बाजू में बराबर एक खुर्सी और टेबल रखा है वहां पर दो बंदे खड़े हैं।

मुझे यहां एक फार्म दिख रहा है और उस फार्म में--

मुझे एक फार्म हाउस जवा से दिख रहा है और उसमें काफी गमले सजाए हुए हैं और छोटे-बड़े--

ये पौधे रखे हुए हैं और सामने एक घर जैसा दिख रहा है जो लाल कपड़े से पूरा ढका हुआ है।

मुझे ये एक छोटा सा तालाव जैसा दिख रहा है नदी जैसा दिख रहा है।

और उसके बा तालाव के अंदर एक शेर जैसा कुछ दिख रहा है।

मुझे यहां एक फॉर्म दिख रहा है।

'मुझे यहां एक पर्वत से पानी बहता हुआ नीचे नदी में जाता हुआ दिख रहा है और आजू-बाजू में बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी हैं।

में कार रिपेयर करने का गेराज दिख रहा है जो काफी पुराना जैसा और--

मुझे यहां एक गार्डन दिख रहा है और गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं कुछ झूले झूल रहे हैं तो कुछ--

और एक बनदा वहां सामने खड़ा है।

फूलों के फार्म है फूलों के प्लांट्स रखे हुए हैं।

मुझे यहां एक जनरल स्टोर दिख रहा है।

पेड़ और बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है।